औ पा गाय ते दिखत है। पीछे मा बड़े से घर दिखत है ऐ तो खंबा दिखत है।

और सुंदर-सुंदर सजे है और बहुत सारा उपर मा कपड़ा लगे है रंगीबीरंगी नीचे मा हरा रंग के चटई बिचे है।

बहुत बड़े मैदान दिखत है सामने वहाँ टेंट लगे है विमा--

सामने एका आऊ खड़े है पिछूमा खिड़की दिखत है।

बहुत सारा सामान दिखाती एक लेडीज हात दिखत है एक तरह लेडीज बैठे है नीचे मे ताक सब्जी धरे है उपर मे बोर्ड लगे है।